ये एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है इस हॉल के नीचे लाल रंग का कारपेट बिछा रखा है जो की --

नीचे किसी का काले रंग का जूता रखा हुआ है।